और कुछ कुछ घर भी नजर आ रहे है बड़े-बड़े इमारत भी है और खिड़कियां दरवाजे भी दिख रहे है।

यहाँ पर कुछ लड़कियां लोग कसरत करती हुई नज़र आ रही है लड़कियों ने रंग-बिरंगी कपड़े पहन रखे हैं।

इस चित्र में एक बड़े से मैदान मे बहोत से लोग खेलते हुए दिख रहे --